जिसमें एक बेड रखा हुआ है।

और एक टी_वी भी लगी हुई है। दो कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

यहां पास एक ऑटो इलेक्ट्रिक ऑटो खड़ा हुआ है जिसके अगल बगल दो लोग खड़े हुए हैं।

और बहोत सारे उसमें नीचे छोटे छोटे पत्थर भी लगाए गए हैं।

यहां पास एक बिल्डिंग खड़ी हुई है।

और एक लड़का पिंक कलर की शर्ट पहन कर बैठा है।

ब्लैक कलर की एक कुर्सी रखी हुई है।

यहां पीले और नीले कलर के सेम दो पोस्टर लगे हुए हैं अगल बगल।

और एक बीच में टेबल रखी हुई है और बगल में येलो कलर की कुर्सी और टेबल है और उसके आगे ग्रीन कलर की कुर्सी और टेबल है।

यहां पर बच्चे कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

और टीचर खड़े हो कर देख रहे हैं।

और एक डिब्बा भी रखा हुआ है नीचे ब्लैक कलर की ईस्ट्रिप भी है।

और ब्लैक एंड व्हाइट कलर का गेट भी लगा हुआ है।

और एक आंटी नीचे कुर्सी पर बैठी हुईं हैं।

और अंदर साइड भी झाड़ू और वाइपर लटक रहे हैं।

की बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हुई हैं यू_एस पोलो नाम का--

यहां पास बहोत सारी कुर्सी कुर्सिया लगाई गई है।

कुछ ग्रीन कलर की कुछ ब्लू कलर की कुछ ऐरे ऑरेंज कलर की--

यहां पास बहोत सारी चांदी की अंगूठी रखी है और रेड कलर के बॉक्स के अंदर है।

और इन लोगों ने बहुत सारी मछली पकड़ी हुई है और एक लड़का अपने कैरेट को उठा रहा है।

और दो लड़के अगल बगल खड़े होकर देख रहे हैं और नीचे बहोत सारे छोटे - छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे --

यहाँ पास एक रेल्वे स्टेशन बना हुआ है।

हां पास एक डाइनिंग टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर एक टिशू भी रखा--

और चार कुर्सियां भी रखी हुई--